मुझे इस तस्वीर में दो स्टेनलेस स्टील मशीन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ए_टी_एम के सामने थर्मोकोल बॉक्स भी दिख दे रहा है।

बिल्डिंग के खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में फोन का दुकान दिखाई दे रहा है।

बैलून का रंग पीला और काला दिखाई दे रहा है।

सामने में कलर और जोमेट्री बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

सामने में बच्चों के फ्रॉक भी टंगाया हुआ है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

कोने में ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर भी दिखाई दे रहा हैं।

दीवार पर दो स्विच बॉक्स भी लगा हुआ है बिस्तर के नीचे एक कार्टून का बॉक्स भी दिखाई दे--

सामने में बहुत सारे कुर्सियां और टेबल्स भी दिखाई दे रहा है।

जिस पर बहुत सारे क्रीम प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।

सामने मे एक औरत भी दिखाई दे रहा है।